पत्थर पानी के अंदर बिखरे हुए हैं और एक बंदा पत्थर के ऊपर बैठा है और कुछ कपड़े भी पत्थरों के ऊपर में सूख रहे हैं।

और ऊपर से एक तार गुजर रही है और आसमान साफ दिखाई दे रहा है इस साउंड के आगे पोस्टर लगा है जिसके आगे शर्मा ऑडियो लिखा हुआ है।

और बाहर इसकी खिड़कियां कांच की बनी हुई है और कुछ लोग अंदर बैठकर खाना भी खा रहे हैं और अंदर एक फ्रिज भी है।

कुछ जालियां भी दिखाई दे रही है जो ग्राउंड के पास में लगी हुई है और इन सबके फेस नहीं दिखाई दे रहे है।

यहां शादी चल रही है और एक पंडित उनकी शादी करवा रहा है जिसने व्हाइट चद्दर ओढ़ रखी है और आस पास में --

आस-पास में बहुत सारे फूल के गुलदस्ते भी रखे हुए हैं और बीच में कुछ मिठाइयां पड़ी है और कुछ फूल पड़े हैं आस-पास व्हाइट कलर के पिलर हैं और कुछ --

एक कुर्सियां वगैरा पड़ी हैं और लाइट जल रही है और पंखे चल रहे हैं ए_सी लगी हुई है और --

इसके बीच मे एक को टेबल पड़ा है और आदमी खड़े है और बहुत सारे--

पीले कलर के कुछ पेंटिंग्स की गई है और एक साथ में झाड़ी दिखाई दे रही है जिसके पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं जो कि हरे कलर की है।

और एक नीले कलर की लाइटें लगी हुई है और आसमान नीला दिखाई दे रहा है।

यह एक घर है जिसके बाहर एक गाड़ी और एक स्कूटी खड़ी है इस घर के बाहर एक--

एक ये गेट है जिसका जो कि बंद है और इस घर के बाहर एक बोर्ड पर लिखा हुआ है सवा मार्ग सेंटर लिखा हुआ है।

यहां एक ऊंट दिखाई दे रहा है और उसके पीछे एक पेड़ है जिसकी पत्तियां भी दिखाई दे रही है और आसमान नीला दिखाई दे रहा है।

यह एक शॉप है इसके अंदर लाइट जल रही है और पंखे ज पड़े हैं और कुछ टेबल पर गुलदस्ते भी रखे हुए हैं।

धूप के अंदर सो रहा है और ऊपर से कुछ ब्लैक ब्लैक पंपलेट सा दिखाई दे रहा है जो की बहुत ही अच्छा है।